बढ़िया मंदिर है। इसमें देखिए कितने कित कित प्रकार के चमत्कार हो रहे हैं। ये हनुमान गढ़ी मंदिर हनुमान जी के नाम से ही प्रसिद्ध है। जय हिन्द।

ओहो देखिए भाइयो ये कितनी बढ़ियां पार्क है। यहाँ पर यहाँ का नजारा तो देखिए। यहाँ पर चार मीनार भी --

अ बर्थडे पार्टी को कितना खूबसूरत से सजाया है।